एगो फल के दुकान बा और हर तरह के फल किस्म-किस्म सजावल के रखलवा एक दम--

और इ नाशपाती के नीचे के जन जगह बा उ खाली बा टोकरी में कुछों और रखल वा।

और सामने सीसा लागलबा बोतल रखलवा।